पढ़ाई कर रहल उ उउ ग्रिल लगल है टाइल्स है सब बइठल है।

अंदर है बाहर एक बाल्टी है साइकिल है ऊपर घर है शीशा वाला खिड़की लगल है।

बजनिया है छाता लेकर खड़ा है डाइनिंग टेबल लागल है एक पौधा है लाइट है।

निचे उबड़ खाबड़ है | खनाल उनल है बहुत खराब इ रूम हो गया है |

निचे लाल कलर का सड़क है |

पहाड़ी जगह है उसमें एक लड़का है आसमानी कलर का शर्ट पेहना है बंडी है।

एक होटल है एक आदमी गैस के आगे छान रहा है कुछ | एगो बूढ़ा बैठल है दू गो बैग ले कर जा रहा है कुर्सी है।